यहाँ पर एक बड़ा सा टेबल दिखाई दे रहा है उसका कलर भी बहोत ही चांदी कलर का दिखाई दे रहा है। उस--

यहाँ पर बहुत सारे मोबाइल रखे हुए हैं उस पे लिखा हैं वीवो जिओ रीअलमी बहुत सारे मोबाइल रखे हैं उनके डि डिब्बो में पेक दिखाई दे रहा हैं उसका अमेजिंग बहुत ही कलर सुन्दर दिखाई दे रहा हैं बहुत ही सुन्दर लग रहे हैं।